इसकी सजावट फूलों से की गई हैं।

जहां पर बच्चे सिंन्सियर होकर पढ़ रहे हैं।

यह फोटो बहुत सुंदर लग रहा है।

जहां पर कंप्यूटर्स भी रखे है।

लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई हैं।

यहां बहोत पुराना मिन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है।

यह फोटो बहुत सुंदर लग रहा है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।

यहां पर एक मूर्ति बनी हुई है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

यह बहुत बड़ा पुलिस थाना है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां पर किसी ने फोटो खींचा है।

यहां एक कार सर्विसिंग की दुकान का फोटो है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

यह विनायक फूड सर्विस का है।

किसी ने यहां का फोटो खींचा है।

यहां एक गाड़ी का फोटो है।

जहाँ पर फूलों से वेलकम लिखा गया है।

यहां पर और भी बहोत सारी दुकाने हैं।

यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ बेची जाती है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

इसकी सजावट बहोत सुंदर की गई है।

मतलब यह रास्ते पर ही बहोत भीड़ है।

ये खेत बहोत हरे भरे हैं।

किसी ने यहां पर फोटो खींचे हैं।

जो बहोत सुंदर लग रही है।

यह फोटो एक किले का है।

एंड ग्लास की दुकान का फोटो है।